इस इमेज में हमें एक बैंक दिखाई दे रही है बैंक एक बिल्डिंग में हमें कांच लगे हुए दिखाई दे रही हैं।